यहाँ पे बहुत सारे खम्भे दिखाई दे रहे हैं और बिजली के तार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर नीचे घासों की हरी कलर की है।

पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं जो हरे कलर के हैं।

जो हरे कलर के हैं कुछ पेड़ सूखे हैं कुछ पेड़ हरे दिखाई दे रहे हैं |.

जो हरे कलर के जिसमे गद्दे बिछी हुई हैं परदे दिखाई दे रहे हैं जो नीले और सफ़ेद आ सफ़ेद कलर के हैं |

यहाँ पे बहुत सारी लडकियाँ और लड़के भी हैं जो योगा कर रहें हैं।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

यहाँ पर नीचे टाइल्स लगी हुई हैं ये देखने में दिन अ दिन का सीन है यहाँ पर सफ़ेद कलर का पेंट है।

यहाँ पर बहुत सारी लेडीज भी खड़ी हुई हैं बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है वहाँ पर लाइट जल रही है।